इस भवन के बाहर रोड जैसा बना हुआ है।

इसमें शालीमार लिखा हुआ है।

इस दृश्य में एक जुलूस का चित्र है।

इस दृश्य में एक फल दुकान का चित्र है।

इस पार्क में बहुत सारा पेड़ लगा हुआ नजर आ रहा है जो कि हरे भरे हैं।

इस वॉटरफॉल के साइड साइड में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर और चट्टान है।

और चट्टान में घास और पेड़ भी छोटे छोटे निकले हैं और चट्टान पे एक मूर्ति भी बना हु--

सारा केविन लकड़ी का बना हुआ है।

इस कर में एक आदमी पेट्रोल डाल रहा है।

यह आदमी ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।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

और दो लड़की लोग भी है।

और एक स्टेज भी बना हुआ है।

इसमें एक बैनर लगा हुआ है।

और चेयर का कलर व्हाइट है।

इस दृश्य में एक हेवन प्लेस का चित्र है।

इस बोर्ड में श्री द्वारकाधीश वस्त्रालय लिखा हुआ है।

इस छत पे कुछ लेडीज और कुछ जेंस है।

इस छत पे राड भी नजर आ रहा है।

मॉल के गेट के पास कुछ आदमी लोग खड़े हैं।

और एक बोर्ड भी लगा हुआ है।